इस स्कूल के सामने ही एक खाली मैदान है इस मैदान में चुने से कुछ डिजाइन भी बना हुआ है।

इस हॉस्पिटल के बाहर कुछ हरे भरे पेड़ पौधे खड़े हैं इस हॉस्पिटल के ऊपर छत पर डिजाइन भी उतरा हुआ है।

इस गार्डन में कुछ मेज़ भी रखी हुई है इस गार्डन में एक सफेद टेंट लगा हुआ है।

और पानी की साइड में बहुत सारे पत्थर बजरिया भी पड़ी हुई हैं।

इस सड़क पर बहुत सारे खंभे भी खड़े हुए हैं।

इन व्यक्ति के पीछे एक पीतल का लोटा भी रखा हुआ है।

इस दुकान पर दो व्यक्ति काम करते हैं इस दुकान के साइड में एक दुकान और है।

इस मेज के पीछे एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

इस मेज के साइड में दो मेज और रखी हुई है।

कुछ बोर्ड पर कुछ चित्र भी बने हुये है उस बोर्ड पर एक पेड़ भी बना हुआ है।

यह एक बहुत घना जंगल है इस जंगल में हरी हरी घास खड़ी है।

इस दुकान के अंदर एक काउंटर भी रखा हुआ है।

प्रत्येक कमरे के आगे एक एक गमला रखा हुआ है अस्पताल में कुछ आदमी भी घूम रहे हैं।

यह एक मिष्ठान की दुकान है इस दुकान के अंदर बहुत सारी मिठाइयां रखी हुई है इ--

इस दुकान के अंदर एक बच्चा और एक आदमी खड़ा हुआ है।

एक बाइक पर एक आदमी और एक औरत बैठे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सारी टेबल रखी हुई है।

यह एक शादी का पैलेस हैं इस पैलेस में बहुत अच्छा टेंट लगा हुआ है।

और पानी के फुव्वारे पर बहुत सारी मोमबत्ती भी लगी हुई है।

यह एक कंफू किलास है इस कंफू किलास के अंदर एक व्यक्ति बच्चों को कंफू किलास सिखा रहा है।

इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं इन बच्चों के पीछे बहुत सारे खंबे भी है।

इन बच्चों के पीछे एक वॉलीबॉल का नेट भी लगा हुआ है।

यह एक पिज़्ज़ा विंग्स है पिज़्ज़ा विंग्स के अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

सोफों की साइड में कुछ कपड़ा भी पड़ा है।

सोफों के पिछली साइड में कुछ लकड़ियां भी पड़ी हुई है।

यह एक डांसिंग क्लास है इस डांसिंग क्लास में बहुत अच्छे अच्छे गुब्बारे भी लगे हुए हैं।

इन कुर्सियों के ऊपर तीन गुब्बारे भी रखे हुए हैं। इस डांसिंग क्लास में दो बच्चे डांस कर रहे हैं।